हमें यहाँ प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है उसमे --

उस घर लाल और पीला कलर का पेंट हुआ है उसके आगे बिजली का पोल है उसके --

और वे उसके सामने एक सोलर लगा हुआ है।

और व्हाइट कलर का घर बना हुआ है उसके बगल में कुछ फूल उल लगा हुआ है।

कुछ गमले में फूल लगा हुआ है।

पीला कलर का सेंट है ओ उसके बगल में गाछ अअ बहुत-सा है।

और गमले में कुछ फूल भी लगा हुआ है।

रंगा हुआ है यहाँ एने दू तल्ला मकान है उस लोहा का --